यहां पे पंखा भी लगाया गया है यहां पे बहुत सारे खिड़की भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे लड़का और ब्वाय बहोत सारे दिखाई दे रहे हैं यहां पे एक बड़ा सा बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर गुफा का चित्र दिया गया है यहां पर बहुत सारे पोखल दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक रूम का चित्र दिया गया है यहां पे एक बड़ा सा टीवी भी लगाया गया है।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

यहां पे ईटा भी रखा गया है यहां पे बहुत सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे ग्राउंड का चित्र दिया गया है यहां पे बहुत सारे लेडिस और जेंट्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारी पेटी भी रखे गए हैं यहां पे एक बड़ा सा टेबुल भी रखा गया है।

यहां पे बहुत सारे लाइट भी लगाए गए हैं।

यहां पे भगवान का फोटो भी चिपकाया गया है।

उसपे बड़ा सा टेसफार्मर रखा गया है यहां पे बहुत सारे तार भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे पोस्टर भी टांगे गए हैं यहां पे दीवाल का कलर व्हाइट है यहां पे गेट भी लगाया गया है।

यहां पे मकान का चित्र दिया गया हैं यहां पे एक बड़ा सा पोस्टर भी लगाया गया हैं।

साइड में लाइट भी लगाया गया है यहां पे बहुत सारे हरे भरे बांस दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक बड़ा सा रोड भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारे गमला भी रखे गए हैं यहां पे बहुत सारे फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे पोस्टर भी टांगे गए हैं यहां पे एक ब्लू कलर का बाल्टी भी रखा गया है।

यहां पे बहुत सारे गुब्बारा भी लगाए गए हैं यहां पे बहुत सारे कुर्सी भी रखे गए हैं।

यहां पे होटल का चित्र दिया गया है यहां पर डब्बा में चॉकलेट भी रखा गया है।

जो हनुमान जी है यहां पे फुल का माला भी बनाया गया है।

यहां पे बहुत से पर्दा भी टांगा गया है यहां पे एक छोटा सा फोटो भी रखा गया है।

यहां पे एक घर का चित्र दिया गया है।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

यहां पे बहुत सारे खिड़की भी दिखाई दे रहे हैं।